और इसे काले और पीले रंग के फूलों की माला एक कट्टे पर सफेद रंग के फूलों की माला है एक व्यक्ति--

रखी हुई है जो एक खाली है और एक पानी से भरी हुई--

ये एक गाड़ियों का शोरूम है ये स्विफ्ट कंपनी की गाड़ी है पीछे एक ब्लैक रंग की गाड़ी और है उसके पीछे एक --

विंडो के ऊपर हरे रंग की लाइट जा रही है जो इसकी सुंदरता--